सामने में एक करकट डाला हुआ है।

ऊपर में वायरिंग का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है।

नीचे में एक डब्बा रखा हुआ है जिसका ढ़क्कन नीले रंग का है।

जमा हुआ पानी काले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर में एक घड़ी है जो कि भूरे और सफेद रंग की है।

और पहाड़ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

यह दृश्य किराना दुकान का है।

आगे में एक खिड़की बनाया हुआ है।

इस दृश्य में भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है जोकि गोल्डन कलर की दिखाई पड़ रही है।